एक मंजिल का है दो गेट हैं यहाँ पे एक ताला दिया है और एक खुला हुआ है तो फिर किया है।

ये एक मस्जिद है। मस्जिद के द्वार है।

एक बच्चे दो पेड़ के बिच में खड़े होके खेल रहेआसपास देख रहे हैआसपास देख रहा हैपीछे दो-तीन और पेड़ है।

कुछ जंगल और जंगल के उप जंगल के पास से एक ब्रिज जा रहा है जो पहाड़ी तक जा रहा है।

ये एक चर्च ( का फोटो है चर्च बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है।

यहां पे एक उम्म- किताबों की दुकान है। किताबों की दुकान के सामने एक सफेद कलर की गाड़ी खड़ी हुई है। एक यहां पे एक ब्लैक कलर का हेलमेट दिख रहा है। एक --

एक आदमी खरे हुए है दुकान के बाहर औ दुकान के अंदर भी एक आदमी खरे हुए है। आदमी ने सफेद जो दुकान के बाहर है वो सफेद टोपी पहने हुए है।